यह एक मॉल है जिसकी जमीनों पर टैल्स बिछे हुए हैं और छतें इनकी सफेद कलर की है जिन पर लाइटें लगी हुई हैं।

नीचे वन लाइन से ग्रीन कलर के छोटे छोटे गमले हैं।

सामने छोटे छोटे गड्ढों में लंबे से पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के।

ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। उन पर पेंट हुआ है। कार खड़ी है।

एक बिल्डिंग में खंभे लगे हुए हैं गोल आकार के सफेद कलर के हैं बिल्डिंग ।

जमीनों पर टाइल्स बिछे हुए हैं सफेद और काले कलर के डिजाइनदार।

जमीनें कच्ची मट्टी की है उन पर छोटे छोटे लाइन से बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं जिनमें छोटे छोटे रंग बिरंगी फूल लगे हुए हैं।

बगल में बहुत सारे लोग खड़े हैं चीज की दुकान लगी है।

जमीन पर कारपेट बिछा है रेड और ग्रीन कलर का।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है जोकि क्रीम कलर की है।

यह एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसकी जमीनों पर टाइल्स बिछा हुआ है।

सामने दो काउंटर है एक काउंटर के ऊपर कंप्यूटर रखा है बोतल रखी है और दूसरे काउंटर के ऊपर किताब रखी है कैलकुलेटर रखा है और सामान रखे हैं।

यहां एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है जिसकी छतों पर पतली पतली लाइटें लगी हुई हैं।

के वाल बड़े बड़े खंबे हैं जिसके बगल में मशीनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप की।

और बगल बगल में लाइन से ग्रीन कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

अगल बगल लोहे के रेलिंग लगी हुई है। लाइन से छोटे छोटे खम्बें लगे हैं रेड कलर के।

सी कार बाइक स्कूटी खड़ी हुई हैं।

यह एक बड़ा सा तबेला है जिसकी जमीनें कच्छी मट्टी की बनी है।

साइडो में भूसा भरा हुआ है ग्रीन कलर का।